रॉयल एंफीएल मोटरसिक्ले सर्विस के लिए लाइन में लगी हुई है।

अस्पताल एक आँखों का अस्पताल है जिसका नाम है शुभ दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल |

और कॉलेज के बाहार अनेक बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य एक स्कूल अकैडमी का है और अकैडमी का नाम है --

नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे है।

यह दृश्य किसी बस स्टैंड का है। जहां पर अनेक बसे खडी हुई हैं।